एक नीले रंग का कुड़े दान रखा हुआ है और दुकान के सबसे ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है बोर्ड के ऊपर --

कैल ब्रू मास्टर नाम लिखा हुआ है।

रंग का पेंट हो रहा है।

यहाँ पर एक इमारत बनी हुई है यह इमारत तीन मंज़िला है इमारत के ऊपर हल्का --